और काफी गुलदस्ता से जो है इस मंच का डेकोरेट किया गया है सीढ़िया है और कुछ व्यक्ति जो है।

इस इस इमेज में हम देख पा रहै है एक बहुत ही सुन्दर जो है वो शाला है और तीन महिलाएं जो हैं यहाँ पे चार महिलाएं खड़ी है।

और जो है गेट है रंग बिरंगे जो है यहां डेकोरेट किया गया है सुंदर सुंदर।

जो घर के आसपास जो है बहुत ही सुंदर- सुंदर पौधे लगाए हुए हैं।

और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

दूकान है इस स्पोर्ट दूकान मे बहोत सारे बैडमिंटन --

मंदिर मे दर्शन करने के लिये जाते है।

इमेज में देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा --

ग्राउंड है और ग्राउंड में हरे भरे पेड़ पौध हरे भरे घास जागे हुए हैं।

इस इमेज में देख पा रहै है गौतम बुद्ध का जो है यहाँ पे --

हम देख पा रहे हैं इस फोटो में यह जो है एक बैंक है।

मैदान जो है चारों तरफ से घिराया हुआ है पेड़ पौधे जो हैं --

मनोरंजन के तौर पे यहाँ स्विमिंग कर सकते है और कुछ खिलाड़ी होते है वहाँ प्रतियोगिता होता है स्विमिंग का --

देख यहां पे दिख रहा है और जो खेल है उसका आयोजन होने वाला ही है।

इस इमेज मे हम देख पा रहे है छोटा सा तालाब दिख रहा है और छोटा सा तालाब मे बगल मे उसके साइड मे जो हैं।

इस इमेज मे हम देख पा रहै है एक रोड है रोड जो है डामर किया हुआ है।

धार्मिक सामाजिक स्तर से हम यहाँ बुक खरीद सकते है।

इस इमेज मे हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ा तालाब है और जो तालाब जो है मेढ में हैं बहुत सारा पेड़ पौधे है।

यह फोटो हम देख पा रहे हैं यहां पे एक बहुत बड़ा जो है --

अ कुछ स्टेडियम वगैरह बने है वैसा सामने जो है व्यू दिखाया गया हैं।

कुछ बच्चे जो है देख रहै है होमवर्क कर रहै है अपने--

एबिस का है एबिस का जो है शायद ऑफिस है और इस ऑफिस में शायद बहुत सारा गार्डनिंग किया हुआ है।

इस इमेज में हम देख पा रहे है एक सुन्दर सा मंदिर है और इस मंदिर में जो है नीले-नीले कलर का जो है।